इस पंडाल के बाहर एक आदमी और एक औरत खड़ा है ।

इस ऑटो रिक्शा के किनारे एक घर है।

यहाँ पर दो आदमी हैं।

पंडाल है यह पंडाल काफी बड़ा है इस पंडाल को कपड़े एवं से बना हुआ है।

लाइट भी है यहाँ पर बहुत कुर्सियां एवं टेबुल है।

यहाँ एक पोल भी है इस नदी में बहुत से पानी हैं।

यह मैदान में बड़े-बड़े पेड़ हैं यहाँ एक बाइक खड़ी है।